एक पूल है जिस पे दो एक बाइक पे दो आदमी बैठा हुआ है एक बस भी है पूल के साइड में

एक नदी है साइड में दो पूल है लंबा-सा पूरा लंबा है।

तीन बस चार बस खड़ी हुई है एक टोटो है जिसपे एक इन्सान है एक हेलोज़न है इस- तार गया हुआ है एक बिल्डिंग भी है बस के पीछे कुछ पीछे बेंच लगी हुई है।

एक पूल है जिस पे से एक बाइक आ रहा है।

एक न-नीच-नीचे पूरा नीला सा नदी भी है एक पु-पूरा पुल खड़ा हो रहा खला खड़ा हुआ है आसमान पूरा नीला है।

एक रोड है जिस पे से एक बबा भी बाबा भी हैं दो बस है उम दो एक तीन बश है।

एक एक मूर्ति भी है। इस साइड पे एक सोया मूर्ति है।

हम एक-एक रोड है मेन रोड सामने तीन चार आदमी चार आद पाँच आदमी है। एक बस है उम्म सामने एक बस है तीन बस साइड मे खड़ी हुई है कूछ मिट्टी भी है कूछ इधर कचरा भी है।

गेट भी लगा है ह्म्म्मम्म-गुफा पूरा अंदर है बहुत ब्लैक गुफा है हम्म्म-ब्लैक भी लगा है । कुछ कुछ तार भी सा --